और पीछे एक आदमी है जिसने येलो कलर की चादर ओढ़ी हुई है ऊपर डेकोरेशन किया हुआ है तारों से रिबन से।

दो और कुछ ल औरतें हैं जो योगा कर रही हैं।

उसके साइड - साइड में बहोत बड़ी-बड़ी --

एक ऑफिस है जहां लिखा हुआ हैं ब्लू कलर का है।

और उसके नीचे रेलिंग वाली सीढ़ी है।